यह एक रोड है जहाँ से कुछ ब्यक्ती जाते - आते दिखाई दे रहे हैं और बाद में एक सरकारी गाड़ी का खड़ी हुई है ।

सामने एक बुक काअअअ की दुकान दिख रही है। काफी पुस्तकों की जहाँ कम चार छः लोग वहां खड़े होकर --

और पाइप लोहे के पाइप गड़े हुए है। और टीनशेड सेट करा दिये गये हैं ।

घोड़े की वहां मूर्ति बना दी गयी है और आइट साइड से कुछ जाली वगैरह लगी हुई है ।